ज्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा है सारा खाली है कोई यहाँ पे है भी नहीं एकदम शांति वातावरण जैसा लग रहा है।

लग रहा है तो कुछ तो दिखाई दे रहा है पूरा खाली-खाली दिख रहा है पूरा खाली है दिख रहा है।